तस्वीर एक कमरे की है जहां लोग बैठक कर रहे हैं।

यह जगह बहोत साफ सुथरी और शांत है।

यह एक टू व्हीलर शोरूम का दृश्य है।

कुछ लोग दुकान के बाहर खड़े हैं और बातचीत कर रहे हैं।

सामने की पंक्ति में पादरी विशेष वस्त्र पहन कर बैठे हैं।

दीवार पर एक मानव शरीर का टंगा हुआ है।

सामने एक काउंटर है जहां ग्राहक सेवा दी जाती है।

पीछे कुछ लोग खाने की लाइन में खड़े हैं।

सड़कों के किनारे दुकानें और ठेले लगे हुए हैं।

यह एक बड़ा और सुंदर इमारत है।

इमारत के सामने एक काली गाड़ी खड़ी है।

आस पास कई पेड़ हैं जो छाया प्रदान कर रहे हैं।